विंडो दिख रही है एक वाइट ब्लू कलर का पर्पल कलर का कलर पुता है दीवार पर विंडो दिख रही है --

जैंट्स दिख रहे हैं। लड़कियां दिख रही कलर तरह तरह की लाइट दिख रही है। बदल दिख रहा है। डीजे दिख रहा है।

सारे आदमी है विशालपट्टी है और एक गेम है। छोटे बच्चों का कुछ आदमी बैठे हैं कुछ खड़े --

एक लेडिस है जो यल वाइट कलर के कपड़े पहन रखी है जो चश्मा लगा रही है| स्लिपर पेहने है ब्लेेक कलर की | विंडो दिख रही है।